यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं यह लाल कलर का कुर्ता पहने हुए हैं। का बच्चा भी दिखाई दे रहा हैं वो भी लाल कलर का टीशर्ट पहना हुआ हैं उसके बगल में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा हैं जो पीले कलर का शर्ट पहना हुआ|

यहाँ पर भी कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं जो बैठी हुई हैं एक महिला कुछ टोकरी में ली हुई है एक सामान लिए हुए हैं और उस दूसरी महिला के हाथ में भी टोकरी में कुछ है सामान दिखाई दे रहा हैं हल्के हल्के भी दिखाई दे रही हैं।

और यहाँ पर भी कुछ बड़ी बड़ी मछलियां दिखाई दे रही हैं। अ कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ बल्ब भी दिखाई दे रहे हैं जो जल रहे हैं। सत और फिर टोकरी भी दिखाई दे रही है। ऊपर एक बाल्टी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो काले कलर --

यहाँ पर भी कुछ औरते दिखाई दे रही हैं जो खड़ी हुई है तथा कुछ औरते बैठी हुई हैं। बीच मे कुछ केला रखा गया है तथा ईंटे रखी गयी है और बहुत सारे सामान रखे गए हैं। बीच मे एक दीवाल जैसा कोई बॉउंड्री जैसा दिया गया है।